सेल्फी ले रहा है या फोटो ले रहा है और इसके नीचे पहाड़ है और ये लड़का बहुत ही शानदार दृश्य देख रहा है जोकि बहोत सुंदर है।

हर जगह वन प्लस फाईव जी के अच्छे मोबाइल और जिओ की सिमे भी उपलब्ध हैं बहोत अच्छी क्वा--